इस फोटो मे हमे एक मेला दिख रहा है जिसमे हमे कुछ झूले नजर आ रहे है।

काफी सारी मशीन दिख रही है हमे एक लाइट का पाइप दिख रहा है टीन की चद्दर दिख रही है एक मीटर दिख रहा है। लाइट --

इस फोटो में हमें काफी सारे लोग दिख रहे हैं बहुत सारा क्राउड नजर आ रहा है।

दो बच्चियाँ दिख रही हैं। जिसमें से एक ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है और एक ने यैलो और ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी --

और बहुत सारे लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे झूले दिख रहे हैं और बहुत सारी लाइट्स हमें दिख रही हैं काफी ज्यादा क्वांटिटीज में लाइट्स हमें दिख रही हैं।

जोकी खुला हुआ है लाइट के वायर्स हमें दिख रहे हैं शटटर्ड दिख रही है।

इस फोटो में हमें अ-एक गाय दिख रही है। एक बाइक दिख रही है। जिस पे दो लोग बैठे हुए हैं।

दो बिल्डिंग्स तीन बिल्डिंग्स है ये तीन बिल्डिंग्स में डिवाइडस दिख रही है पार्टीशन में जो कि बन रही है काफी सारे पेड़ हमे दिख रहे है जिसमे से एक पेड़ नीम का पेड़ है व्हाइट कलर की दीवाल दिख रही है।

इस फोटो में हमें एक गैराज दिख रहा है। जिसमें काफी सारी कार्स हमको दिख रही हैं। रेड कलर की व्हाइट कलर की बहोत सारी कार्स दिख रहें हैं।